बोहोत पुराना किला है और यह किला ढह चूका है यह अब खण्डार में बदल चूका है।

सरन वाटिका यहाँ पे लोग कमरे ले कर रहते है। यहाँ पे भाड़े पे कमरे मिलते है। यहाँ पे लोग रहते है। बहुत सारे लोग रहते है। यह एक अप्पार्टमेन्ट है।

उसमे तेर सकते हैं और उसमें लोग नाहाते भी हैं।

कुछ लोगो द्वारा मछलियो मछलियां बेचीं जा रही है।

यह एक मस्जिद है जहां पे मुस्लिम समाज के लोग आते हैं।

यह एक हेयर कटिंग सलून है।

जहां पे लोगो के बाल काटे जाते है दाढ़ी बनाई जाती है।

लोग इसे खाना पसंद करते हैं।